के पीछे एक साइकल सवार भी नजर आ रहा हैं।

उम्मं डैम के किनारे में कुछ झाड़ियां उगी हुई है और एक साइड में पहाड़ नुमा कुछ नजर आ रहा है।

इस दृश्य में एक शादी के घर का चित्र है जहां पे सजावट की हुई है फूलों --

दीवाल के पास में एक गमला है गमले में पौधा लगा हुआ है।

उनके सर पे भी सहरा जैसा कुछ बांधा हुआ है।

एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसमें चश्मा लगा रखा है।

इस चित्र में एक ट्रैक्टर र खड़ा है ट्रैक्टर का कलर ब्लू है।

ट्रैक्टर के बगल में एक बड़ा विशाल पेड़ है।

इस दृश्य में एक साइकल नजर आ रहा है साइकल के सीट का कलर पिंक है।

यहां पे काउंटर में बहोत सारे खाने पीने की वस्तुएं नजर आ रही है।

और शीशे में एक कार की परछाई नजर आ रही है।

पेड़ के सामने में लोहे के फ्रेम पे एक टीन लगी हुई है।

वो सूरज की रोशनी की तरफ हाथ से इशारा कर रहे हैं आसमान में सूरज की रोशनी बिखरी हुई है।

और उसेपे ग्रीन मैट बिछा हुआ है।

और उसके ऊपर में एक हैलोजन लाइट जल रही है।

सब लोग ब्ल्यू कलर का पिजामा पहना हुआ है।

जहां पे वाइट कलर के कुछ टेबल लगे हैं और उनके पास में ब्लैक कलर की कुछ कुर्सियां लगी है।